ये एक किताबों की दुकान है।

और छत सूफेद है और वाइट कलर की ट्यूबलाइट है।

यह एक मंदिर है जिसपे लाल कलर हो रहा है।

और एक चैन है लोहे की और दुकान पे वाइट कलर हो रहा है।

और बहुत सारी टंकी लग रही है और कुर्सी भी धरी है।

नीचे फर्श है और बहुत सारी खिड़की है।

और एक सामने काउंटर है जिसपे बहुत साले फल धले है।

बहुत सारी बेंच है और उनके ऊपर शीशे रखे हुए हैं बहुत सारे।

यह एक डॉक्टर की दुकान है।

इसमें लाइट जल रही है पेले कलर की। एक कार खड़ी है।

एक कार है व्हाइट कलर की और बहुत सारी मोटरसाइकिल है।

बेंच धरी है लकड़ी की।

शीशे के बेंच है और लाइटें हैं नीचे फर्श है।